और सेब भी है और एक आदमी यहां खड़ी होके फल--

लिखा हुआ है यहां तो कुछ तरह की लौंड्री का लौंड्री का मॉडल्स है।

और वहां कुर्सियां टेबल भी दिख रहा है ये कुर्सी तो लाल रंग का है और यहां एक आदमी पिंक शर्ट पहना हुआ है और एक आदमी ब्लैक शर्ट पहना हुआ है।

संध्या- संध्या काल है सूर्य- सूर्य जी बहुत अच्छा दिख रहा है।

एक आदमी लाल शर्ट पहना हुआ है एक आदमी वाइट शर्ट पहना हुआ है और वहां ऊपर पंखा दिख रहा है और उस सीलिंग का लाइट्स भी दिख रहा है--

और दूर से करंट पोल भी दिख रहा है और ज्यादा लोग यहां है एक औरत लाल रंग का साड़ी का पहना हुआ है।

और वहां आकाश भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है यहां पेड़ है दो पेड़ है ज्यादा पुराना पेड़ है।

ये तो एक बारबार शॉप जैसी लग रहा है यहां एक आदमी अ-म हेयर कट कर रहा है एक आदमी हेयर कट करवा रहा है।

आने का इंतजाम हो रहा है यहां बैठने के लिए कुर्सियां भी हैं और टेबल भी हैं।

या इसमें ना वाइट कलर की कार और ग्रे कलर की कार्स और और तरह-तरह की कार्स दिख रहा है।

गर्भ के यूज के लिए सामान और बॉडी के यूज करने के लिए सामान सब कुछ ही अवेलेबल है यहां इस रैक्स में ना ज्यादा सामान दिख रहा है।